जानवर होते हैं जैसे की गाय आती हैं हेवी वाली गाय अ--

मनाली में स्नो फॉल होता है कश्मीर में स्नो फॉल होता है ठंडी जगह है पहाड़ी इलाका है ये।

ये कोरट है हाई कोर्ट है जहां पे लोगों का केस सुल सुलझते हैं उलझते हैं वकील आते हैं अलग अलग तरीके के केस होते हैं।

चौबीस घंटे ए_टी_एम चालू रहता हैं इमरजेंसी में भी लोग अपना पैसे निकाल के--

ये एक कालेज है जहां पे स्टूडेंट अपना काम कर रहे है स्टडी कर रहे है।

ऐसा कुछ ही है जहां पे बच्चे अपने तैयारी--

कोई ओल्ड थीम हो जाता है जिसमें पुरानी पिक्चर्स ऐड करते हैं और स्टोंस रखते हैं काफी मजा आता है।

अ ये शॉप्स है रिटेल शॉप्स जिसको बोलते हैं।

ये एक बैंक्वेट हॉल है यहां पे लोग इंगेजमेंट बर्थडे पार्टी फंक्शन --

ग्रीनरी है पूरा रात को काफी मजा आता है नाइट आउट करने लोग जाते हैं कपल्स जाते हैं।

यह फ्रूट वाले हैं जो फ्रूट बेचते हैं सुबह मेहनत करके फ्रूट लेने जाते हैं फिर सभी लोगों को घरों घरों में फ्रूट पहुंचाते हैं।

पार्क बना हुआ है जैसे की मंदिर बने हुए थे अक्षरधाम मंदिर है अट्ठाईसतह है स्वामीनारायण टेंपल है वहां पे ऐसे स्लाइड्स ।

वाले जो काम करते हैं वो भी पीछे बैक ऑफिस में काम करते हैं तो दिस इज लाइक टाइप ऑफ बैक ऑफिस ये बैक ऑफिस में सब--

ये एक छोटा सा मार्ट है जहां पे सभी कुछ मिल जाता है जैसे आजकल मेडिकल स्टोर्स पे भी--

ये एयरपोर्ट है एयरपोर्ट में प्लेन लैंड हो चुका है जहां पे प्लेन अपना ऊपर जाने का कर रहा है।

ये एक जू बना हुआ है डायनासॉर्स हा एलिफेंट्स हैवी हैवी अ डायनासॉसर्स जो--